चित्र मे एक सड़क दिख रही है सड़क पर एक कार जा रही है सड़क किनारे पेड़ लगे हुए है एक और पहाड़ भी दिख रहा है।

बोरिया रखी हुई दिखाई दे रही है बोरियों के आसपास कुछ पौधे भी लगे हुए है इनमे फूल भी खिले हुए है गुलाबी लाल पीले कलर के फूल खिले हुए है।

इस चित्र मे बम फटाको रखे हुए दिखाई दे रहे है इसमे फूलझड़ीया और क्रेकर्स के डब्बे रखे हुए है।

इस चित्र मे एक स्टेज बना दिख रहा है जिसे चारो और फूल लगे हुए है इसे फूलो से सजाया गया है स्टेज के चारो और कुर्सियां लगाई गयी है।

इस चित्र मे एक पार्लर की की तस्वीर है जहा पे बहुत सारी काले रंग की कुर्सिया डाली गयी है और शीशे लगाये गए है।